सामने बाल के कलर करने वाले की शैंपू रखी हुई है एक कैमरा लगा हुआ है।

इस फोटो में यह स्कूल दिख रहा है जो वाइट कलर में हैब्लू पड्डी में है।

एक आदमी का चित्र है उसमे एक पंखा दिखाई पड़ रहा हैं नीचे ह रेड रंग की चटाई बिछी हुई हैं सामने माला रखे हुए हैं।

इस फोटो में तीन लोग दिखाई दे रहे हैं।

येलो कलर में है एक बिल्डिंग के चार दरवाजे और एक मकान के एक दरवाजे एक खिड़की प्लांट्स को फूल के आकार पर काटा गया है मे इतने सारे प्लांट्स हैं।

मैं कुछ हरी पतियाँ और हरे घास जितने पेड़ पौधे है सामने एक लड़के के हाथ मे कंगन और घड़ी पहनी हुई है। एक लड़के ने शूज़ पहनी हुई है।

बहुत सारे सफेद आसमान सामने ब्लू रंग का कुछ लगा हुआ है।

प्लेट के नीचे मेज मेज के ऊपर कपड़ा है कपड़ा का रंग व्हाइट ब्राउन कलर मे है पट्टी कलर में प्लेट का रंग ब्लैक है।

इतने सारे लेडिस लाइन में लगे हुए हैं कुछ जेंट्स भी है।

कंप्यूटर के सामने कुछ काम कर रहा है।